पर एक टूटी हुई कार दिखाई दे रही है जोकि बहोत अच्छ अम ख़राब लग रही है यहाँ पर कांच भी दिखाई दे रहे है और मुझे यहाँ पर टंकी भी दिखाई दे रही है मुझे --